इस इमेज मे देख सकते हैं हमारे सामने बोहोत बड़ा खूबसूरत सा महजीद है।

और ये हमेशा खुला होता है। मस्जिद कभी बंद नहीं होता। इसमें ताला --

इस इमेज में देख सकते हैं हमारे सामने महिलाओं के सिंगार के दुकान है शॉप है।